एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे कीड़े दिखाई दे रहे हैं जो की सिल्वर कलर के हैं। इन्हे इंग्लिश में प्रोन्स कहते है। एक पन्नी दिखाई दे रही है सिल्वर कलर का डब्बा है प्रोन्स का कलर कुछ ज्यादा साइन कर रहा है कुछ ब्राउन कलर के दिखाई दे रहे है|

का जैसा दिख रहा है बोहोत बड़ी लाइट लगी हुई है। रॉयल पेलेस लिखा है सामने बेनर के ऊपर आस-पास बोहोत सारी गाड़िया खड़ी है दो चोकीदार खड़े हुए है।

वे पीछे बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे है और लड़के खड़े है साइड में एक बेनर बना हुआ है अ नीचे जमीन पे रेड और ग्रीन कलर के कारपेटस बिच्छे हुए है।

जमीन के ऊपर बहुत सारी मट्टी है एक लड़का जो सामने खड़ा है एक बहुत बड़ा गुंबद जैसा है दो आदमी उसको पकड़े हुए है नंगे पैर लुंगी पहने हुए खड़े है।

ऑरेंज और गुलाबी कलर के परदे डले हुए हैं ट्यूब लाइट लगी हुई है वाटर कैन --

जिसमें ऊपर पन्नियों की सजावट की गई हैं पन्नियों का कलर लाल गुलाबी नीला पीला बहुत सारे रंगों की हैं फुग्गे लगे हुए हैं ऊपर दीवार के ऊपर पीछे कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं।

पेड़-पौधे नज़र आ रहे हैं हरी-हरी घास दिख रही है साइड वाले मकानों के ऊपर प्लास्टर नहीं है उनपे ईंटों की दीवार नज़र आ रही है आसमान दिख रहा है।

एक दुकान है जिस के सामने एक बेनर लिखा लगा हुआ है जिस पर चिकेन शॉप लिखा हुआ है।